जो की अ सफेद रंग की है यहाँ आपको छोटे-बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर मे आप देख सकते है आपको एक बड़ी-सी मशीन नजर आ रही है।

और एक आदमी नज़र आ रहा हैजिसने अपने आप को पूरे सफेद रंग से अ कपड़े से ढाँका हुआ है यह इस लड़की के बेग में सेनेटाइजर कर रहा है।

यहाँ एक स्त्री की दुकान है जहां पर कपड़ों पर स्त्री की जाती है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक होटल नजर आ रही है ।

इस होटल मे काफी अच्छा तरीके वाला खाना बनता है।